और बहोत सारे पेड़ लगे हैं जिनका रंग हरा है और आदमी नी नीली शर्ट और काला लोअर और लाल जूते --

और गुफा में सब पत्थर लगे हुए हैं। आदमी धीरे-धीरे कर कर गुफा के अंदर जाने की --

अ कोई जगह है और वहाँ पर बहोत सारी सीढ़िया बनी हुई हैं और रेलिंग बनी हुई है।

जो कि लोह की है। सीढियां नारंगी कलर की है और रेलिंग लोहे की है जो की जालियो जैसी बनी हुई हैं।

और और कोई एक औरत खड़ी हुई है। बिल्डिंग में कुछ पर्चे लगे हुए हैं जिनमें लिखा है --

और गाड़ी का रंग काला है और उसके ऊपर कुछ मशीन जेसा लगा हुआ है।

यह कोई जगह है जहां पर फूल बिक रहे हैं और आदमी औरतें खरीदने जा रहे हैं।

यह एक जगह है। यहाँ पर बोहोत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और यह सब बच्चे मुसलमान हैं।

और यह पढाई कर रहे हैं। इन्हे आदमी पढ़ा रहे हैं और मैडमें भी हैं जोकि --

यह कोई जगह है जहां पर कुछ लोग फिर रहे हैं।

यहे कोई जगह है जहां पर कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं।

नदी से झरने से पानी गिर रहा है।